आइसक्रीम से यहां पर कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है और बहुत सारे चेयर्स यहां पर लगी हुई है ये बहुत अच्छी लग रही है पार्लर --

ये बस बहोत बड़ी और बहोत अच्छी है इसके पास भी एक ऑटो भी खड़ा हुआ है बहोत सारे जन है यहां पे।

कप प्लेट झींगा ताजा मछली मिलती है ये यहां पे अनेक प्रकार की मछलियां अच्छे से मिलती है।

दूर दूर से बुक्स खरीदने के लिए आते है।

ये एक बोहोत बड़ा गार्डन है ये गार्डन बहोत बड़ा और बोहोत सुंदर है यहां पे घास है अच्छी अच्छी।

मूर्तियां बना रखी है इस गार्डन के पास में एक ब बहोत बड़ी बिल्डिंग है बहोत सारे लोग यहां पे घूमने आते हैं दूर दूर से।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

यहां पे लोग दूर दूर से आते हैं इस म्यूजियम को देखने इस म्यूजियम में पूर्वजों के राज्य राजा और की --

अच्छा लग रा है यहां पे बहोत सारे डाइनिंग टेबल और चेयर्स है ये रेस्टोरेंट --

यह एक फूल माला की दुकान है यहां पे फ्रेश फूल जाते हैं जैसे लोटस रोज --

गाजर खीरा स्वीट पोटैटो और भी बहुत सारे यहां पर सब्जी है ये सब्जियों की शॉप बहोत बड़ी है।

ये आइसक्रीम की शॉप बहोत बड़ी है यहां पे आइसक्रीम के अलावा पिज़्ज़ा चाऊमीन और भी बहोत सारी चीज मिलती है।

यह एक बहोत बड़ा रेस्टोरेंट है यहां पे बहुत बड़े बड़े टेबल्स और एक एक करके चेयर्स लगी हुई हैं।

ये चेयर्स और टेबल बहोत बड़ी है और साफ सुथरी है।

और यहां का व्यू भी बहोत अच्छा लग रहा है ये कैफे बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है ये कैफे --

बुक्स खरीदने के लिए आते हैं यहां पे अलग-अलग तरीके के बुक्स है इस शॉप पे बहुत बड़ी भीड़ हो रही है और --

यहां पे सड़क के पास में एक मैदान भी है बहोत बड़ा जो बहोत अच्छा है।

यह हॉस्पिटल बहुत अच्छा और बड़ा है इसके पास में एक दवाइयों का मेडिकल भी है और --